और उनके सामने एक खाली जगह है जहाँ पानी जामा हुआ है और पानी कही कही हरे रंग का है ।

ये एक जू है जिसमे एक सफेद बाघ दिख रहा है जिसके ऊपर काली काले धारियां हैं।